सामने एक श्री जैन सनातन कोत्तर महाविद्यालय कॉलेज दिखाई दे रहा है।

उसके पास एक लोहे की गेट लगी हुई हैं जो कि जालीनुमा हैं और पास में एक गोल कुआं भी दिखाई दे रहा है।

वो देखो कैमरा भी दिखाई दे रहा है जिसके पास लाइट वाली भी है स्क्रीनिंग और पानी का कैंपर पड़ा है।

रस्सी भी पड़ी है ताकि सर को आज--

यहां पर बहुत सारे मेरे सामने व्हाइट कलर की पेज पड़े दिखाई दे रहे हैं।

और पास में कुछ और भी सफेद नोट्स पड़े हैं जिनके ऊपर त्रिभुजाएं दिखाई दे रहे हैं।

आ तो दोस्तों मेरे सामने एक--

जिसके बाहर एक दादाजी दिखाई व्यक्ति दे रहा है जिनके हाथ में छत्ता है।

जोकि किसी बिल्डिंग की छत लगा रहे है।

जिसके बाहर एक महिला खड़ी है जिसके पेट पे कुछ पट्टी बंधा हुआ है नजर आ रहा है।

जोकि कांच के शीशे के अंदर कुछ बिस्किट मिठाई वगैरा दिखाई दे रही है छोटा सा कूलर भी --

मेरे सामने श्री बेयर कंप्यूटर्स वाले की दुकान दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने हरे रंग के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

और पांच छ महिलाए दो छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो की स्वेटर पहन रखे--

और इधर एक टेबल छोटा सा पड़ा है जिसके ऊपर ए_सी वाला रिमोट --

डिस्पोजल है और इन्होंने येलो रंग की केप पहन रखी है सर के ऊपर जो--